इसकी पूरी बाउंड्री वॉल बनी है और इस नदी के एक किनारे पर एक चबूतरा बना है जिस पर कुछ--

कुछ ग्राउंड का एरिया है जो खाली है यहां पर बहुत सारी घास लगी है और कुछ पेड़ पौधे भी बड़े लगे हुए हैं पीछे की तरफ भी बड़े पेड़ हैं।

जहाँ पर ग्रीन लाइट लगाई गई है और सामने की तरफ बहुत सारी बाइक खड़ी है आसपास बहुत भीड़ है मंदिर के--

यहां पर एक क्रीम कलर की बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जो एक पुलिस स्टेशन है यहां सामने पुलिस स्टेशन के बोर्ड भी लगे हुए हैं।

यहां पर सफेद कलर की एक बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसके ऊपर कृष्णा हॉस्पिटल का--

कलर का टेबल बना है उसके ऊपर रखी हुई है और आस पास में प्लास्टिक के लाल कलर के कुछ स्टूल सेट करके रखे गए हैं।

सामने एक वाइट चादर बिछी है पंखा लगा है और साड़ियों को कांच में भी लगाया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से क --

यहां पर हीरो कंपनी का एक शोरूम है जो व्हाइट और रेड कलर से पेंट है जिसके गेट ग्लास के बने हुए हैं अंदर की तरफ बहुत सारी बाइक र--

यहां पर एक मेडिकल स्टोर है जो गौरीशंकर मेडिकल हॉल के नाम से बना हुआ है और अंदर की तरफ पूरी मेडिकल की--

बहोत सारे बॉक्स कार्टून रखे है जिसमें सामान रखा हुआ हैं।

यहां पर एक घर बना हुआ है जो ग्राउंड फोल फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है और इसके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ इस पर प्लास्टर नहीं हुआ है घर पर।

यहां पर एक लड़की ने रेड कलर का ड्रेस पहनी है।

और कहीं कहीं सफेद कलर की लाइट दिख रही है और यह एक पोजीशन में बै--

वो सफेद कलर की है इनके आसपास बहुत सारी चेयर रखी है जिनपर बहोत सारे कस्टमर्स बैठे हुए हैं।